इस वाटर पार्क में दो बड़े बड़े स्विमिंग पुल बने हे दिखाई दे रही है बीचो बीच एक बड़ा सा चबुत्र्रा बना जिस पर एक घडी भी लगी हुई नज़र आ रही है कुछ पोधे भी लगे हुए है।